गुलाबी कलर का पेंट है और छत की पट्टे की लाल कलर की है।

पीछे गोल का आकार का इमामबाड़ा की तरह बिल्डिंग बनी है।

यह फोटो रॉयल इन्फिनड के कंपनी की है।

एक तराजू भी टेबल पे रखा हुआ है।

यह फोटो एक स्कूल के बाहर की है।